फर्नीचर के बॉक्स वाली अलमारी बनी हुई है।

एक बड़ा सा मैदान है।

जमीन पे हरी हरी घास निकली हुई है।

पंखे लगे हैं। लाइटें लगी हैं और नीचे अलमारी बनी हुई है बहुत सारी फर्नीचर की।

इनमें किताबें बहोत सारी रखी है।

जमीन पर टाइल्स लगी हुई है।

बोर्ड लगा हुआ है सामने जिसपे ए_टी_एम लिखा हुआ है।

सामने दो पेट्रोल टंकी है।

और रेड कलर के सिलेंडर हैं।

रेलिंग लगी हुई है स्टील की दीवार पे--

इसमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पे हरी हरी घास निकली हुई है।

बॉक्स वाली अलमारी है शीशे की।

इक लिफ्ट वाली सीढ़ी है।

एक व्हाइट कलर की बाइक है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है हेलमेट पहने।

इसमे बहोत सारी मशीने है लोहे की।

जमीन पे टाइल्स लगी हुई है।

रेड कलर के टेडी बियर हैं रंग बिरंगे।

ये एक बड़ा सा मैदान है।

ये एक जिम है इसमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

लोहे की मशीने है बहोत सारी।

वहां सारे खंबे लोहे के हैं।

और हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक फीरोजी कॉलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बेंच बिछी हुई है जालीदार जिसपे चारा है।

बड़ा सा पेड़ है ग्रीन कलर का।

एक रोड है इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे का खंबा है लाइट लगी है उसमें।

दो आदमी सेरवानी पहने हुए हैं।

व्हाइट कलर के सूट पहने हुई हैं।

ये एक सड़क है जिसमें बहोत सारी कार है रंग बिरंगी।

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।